सीढ़ियां बनी हुई है और एक लड़की सीढ़ियों से चढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

यह पिक्चर किसी बॉक्स ऑफिस के बारे मे दिखाई गई है जो कि देखने में बहोत बड़ा लग रहा है वहाँ--

बिस्किट के पैकेट्स हैं और वहां पर एक फ्रीजर है जो कि आईसक्रीम का है और वहां पर एक मन्दिर भी दिख रहा है।

सामने पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो की देखने में काफी ज्यादा हरे भरे लग रहे हैं।

उस बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां हैं और हर एक खिड़की पर एक एक ए_सी लगी हुई है।

और ये बसें खाली खड़ी हुई है।

मुझे कुछ दो तीन दुकाने दिख रही हैं यहां पर बहुत सारे लोग हैं।

आदमी दिख रहा है यहां पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

यहां पर बोहोत सारे खिलौने दिख रही हैं लाइटें लगी हैं।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

यह पिक्चर किसी बस स्टॉप के बारे में दिखाई गई है।

और वहां की जमीन हरी भरी दिख रही है।